ये दुकान है। दवा का दुकान है।

ये शिशु हॉस्पिटल है मतलब बच्चे लोग का है जिस का नाम इसमें धर्मशाला भी है जिस का नाम है पंजीकरण खंड शाह-धर्मशाला।

और ये बहुत ही अच्छे सर है बहुत अच्छे से समझाते है क्लास रूम ही बहुत ही अच्छा ये बहुत अच्छा ट्यूशन है।